दूध का फैक्ट्री हो सकता है यहाँ पे। टोपी पहन के लोग काम कर रहें हैं। ठंडा का समय है। स्वेटर जैकेट सभी लोग पहने हुए हैं। ई टी-शर्ट पहना हुआ है।